दोस्तों bash में nested और multilevel if statement के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
nested ifelse और
multilevel ifelse statement
हम यह कुछ उदाहरण उपयोग करके करेंगे
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स operating system से परिचित होना चाहिए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
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स 1204 os और
gnu bash version 4110
अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
अब nested ifelse statement का flow यानी प्रवाह समझते हैं
यहाँ यदि condition 1 true है तो condition 2 मूल्यांकित की जाएगी
यदि कंडीशन 2 true है तो statement 1 निष्पादित किया जाएगा
जिसका मतलब है केवल जब conditions 1 और 2 दोनों true हैं that statement 1 निष्पादित किया जायेगा
यदि कंडीशन 1 false है तो statement 3 निष्पादित किया जायेगा
और यदि condition 2 false है तो statement 2 निष्पादित किया जायेगा
एक उदाहरण देखते हैं
मैंने nestedifelse sh file में code लिख लिया है
मैं इसे खोलूंगी
अब मैं code समझाती हूँ
यह शीबैंग line है
variable name को value anusha नियुक्त की गयी है
variable password को value abc123 नियुक्त की गयी है
read command मानक input से data की एक line को पढ़ता है
hyphen p flag prompt को दिखाता है
hyphen p के बाद enter name: यह string terminal पर दिखाया जायेगा
myname variable है जो यूज़र के द्वारा प्रविष्ट किया गया text जोकि यूज़र input है को संचित करता है
पहला if statement दो variables myname और name की तुलना करता है
यानी यूज़र input और variable name में संचित value जोकि anusha है
अगर दो values मिलती हैं तो इस if statement में शेष code मूल्यांकित किया जायेगा
read command पढ़ती है और variable mypassword में प्रविष्ट किया हुआ password संचित करती है
यहाँ hyphen s flag silent mode के लिए है
इसका मतलब है कि यूज़र द्वारा प्रविष्ट किया हुआ text terminal पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा
यहाँ हमारे पास ifelse statements का एक अन्य set है
ifelse statements का यह set पहले if में nested किया जाता है
दूसरा if statement variables mypassword और password की तुलना करता है
जब if condition true होती है तो echo terminal पर message welcome प्रदर्शित करता है
यानी passwords मिलता है
e backslash escape की व्याश्या संभव बनाता है
\n नयी line के लिए है; जिसका मतलब है string welcome printed किया जायेगा
जब if condition true नहीं होती है तो else condition निष्पादित की जाएगी;
यानी जब passwords मिलान नहीं होता है तो else condition निष्पादित की जाएगी
इस स्थिति में echo wrong password दिखायेगा
fi भीतरी ifelse statement समाप्त करता है
अपने पहले ifelse statement पर वापस आते हैं
अगर myname और name में values मिलान नहीं होती हैं तो यह else statement निष्पादित किया जायेगा
यह terminal पर message wrong name echo करेगा
fi बहरी ifelse statement समाप्त करेगा
अब अपने keyboard पर ctrl + alt और t कीज़ एकसाथ दबाकर terminal window खोलें
file को निष्पादन योग्य बनाते हैं
type करें: chmod space plus x space nestedifelse sh
अब type करें dot slash nestedifelse sh
program दो conditions प्रमाणित करता है
यानी name और password
जब यह terminal पर निष्पादित किया जाता है
यहाँ prompt enter name निष्पादित करता है
अब type करें anusha
चूँकि यह condition true होती है अतः अगली if condition मूल्यांकित की जाएगी
अब prompt दिखाता है password
मैं password में abc123 type करुँगी
ये password variable password में value से मिलता है
इसलिए prompt message welcome दिखाता है
अब script को दोबारा निष्पादित करते हैं
अप arrow की दबाएं
dot slash nestedifelse sh पर जाएँ
enter दबाएं
इस समय हम वही name अलग password के साथ प्रविष्ट करेंगे
अतः मैं name में anusha और password में 123 प्रविष्ट करुँगी
name की values मिलेंगी लेकिन password की values नहीं
अतः message wrong password प्रदर्शित किया जायेगा
यह सिद्ध करता है कि पहले if statement के अंदर nested else statement निष्पादित किया गया था
एक बार और script को निष्पादित करते हैं
इस समय हम name में swati प्रविष्ट करेंगे
message wrong name प्रदर्शित होता है
ऐसा इसलिए क्योंकि name swati पहले घोषित की गयी value anusha से नहीं मिलता
control पहले if statement के बाहर आता है और else statement निष्पादित करता है
यह message wrong name prints करता है
अब multilevel ifelse statement को देखते हैं
अगर कंडीशन 1 true है तो statement1 1 निष्पादित होता है
अगर condition 1 false है तो condition 2 मूल्यांकित होती है
अगर कंडीशन 2 true है तो statement 2 निष्पादित होता है
अगर condition 2 false है तो condition n मूल्यांकित होती है
अगर condition n true है तो statement n निष्पादित होता है
और अगर condition n false है तो statement x निष्पादित होता है
अब एक उदाहरण देखते हैं
मेरे पास एक कार्यकारी उदाहरण है
मैं इसे खोलूंगी ध्यान दें हमारी फाइल का name multilevel hyphen ifelse dot sh है
अब code पूरा समझते हैं
यह शीबैंग line है
mystring एक variable है जो निष्पादन के दौरान यूज़र द्वारा input शब्द संचित करता है
if condition जाँचती है कि the input string नल null है
hyphen z जाँचता है कि क्या string की लम्बाई zero है
terminal पर type करें man test और अनेक string comparison का अन्वेषण करें
अगर कुछ भी प्रविष्ट नहीं किया जाता तो echo statement printed किया जायेगा
पहली elif condition जाँचती है कि the input string में raj है
अगर है तो यह echo statement printed किया जायेगा
वाइल्ड कार्ड्स character निश्चित करता है कि इसमें raj के साथ कोई भी शब्द पहचाना जाएगा
अगली elif condition जाँचती है कि the input string में शब्द jit है
अगर है तो यह echo statement printed किया जायेगा
जब ऊपर की सारी conditions fail हो जाएँगी तो else condition निष्पादित की जाएगी
और यह sorry! input does not contain either raj or jit message दिखायेगा
fi multilevel ifelse statement का अंत दिखाता है
अब program निष्पादित करते हैं
अपने terminal पर वापस आते हैं
type करें: chmod space plus x space multilevel hyphen ifelse dot sh
type करें dot slash multilevel hyphen ifelse dot sh
हमसे input के लिए पूछा जाता है
अब हम भिन्नभिन्न inputs देते हैं और देखते हैं कि हर बार क्या होता है
पहले मैं बिना कुछ टाइप किये enter दबाऊँगी
nothing was entered message दिखता है
और control multilevel ifelse statement के बाहर आ जाता है
अब मैं prompt clear करती हूँ
अब script को भिन्न input के साथ निष्पादित करने की कोशिश करते हैं
अप arrow की दबाएं
dot slash multilevel hyphen ifelse dot sh पर जाएँ
enter दबाएं
prompt enter a word दिखाता है
मैं abhijit type करुँगी
abhijit contains word jit output दिखता है
यह दिखाता है कि हमारे code में control तीसरी condition पर गया
पहली दो conditions मेल नहीं हुई
वहीं logic सारी conditions पर लगता है
भिन्नभिन्न inputs के लिए program को निष्पादित करने की कोशिश करें और परिणामों को जाँचें
अब सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा:
name और password सत्यापन के साथ nested ifelse का उपयोग और
multilevel ifelse: string comparison program का उपयोग
एक नियत कार्य में भिन्नभिन्न output के लिए एक program लिखें जब number
3 से बड़ा हो 3 से छोटा हो
या 3 के बराबर हो
या जब यूज़र input खाली हो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
spoken tutorial project team
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चालती है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
यह भारत सरकार के it it आर दी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है
इस mission पर अधिक जानकारी नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध है
यह script प्रभाकर द्वारा अनुवादित है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने धन्यवाद